वर्क हुआ है और एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है यह।

और यह बफैलो का दो घर बना हुआ है और दो ऊपर विंडो हैं।

और ये एक ड्राइवर बहोत अच्छा लुक है और यहां पर ट्री भी है ट्री का करन--

ये बहुत अच्छा स रेलवे ट्रैक लग रहा है रेलवे ट्रैक का प्लेटफार्म लग रहा है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है आई थिंक वो--

और प्लेटफार्म के पास थोड़े आगे करके एक ब्रिज है सबवे है ए--

ब्रिज बना हुआ है जिससे लोग क्रॉसिंग करते हैं उधर से दूसरी तरफ आने के लिए उधर से--

हिंदी इंग्लिश दोनो में लिखा हुआ है वाल पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ।

जीरो सिक्स वन फाइव फोर ये हो सकता है ढाबे ओनर वाले का नंबर हो।

लोग अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक बाहर रेड कलर की टेबल रखी हुई है जिस पे एक वाटर कंटेनर रखा हुआ है बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई है।

अंदर जा के एमप्लोईस ब अ क ख बैठे हुए हैं जो आई थिंक डोमिनोस सप्लाई कर रहे हैं।

ये एक बहोत अच्छा सा गार्डन लग रहा है गार्डन में दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन वाली बहोत ग्रीनरी है।

बर्ड हमारी बैठी हुई है जिसके नाम पीकॉक है और पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल ।

बाहर बहुत अच्छा एक गार्डन बना हुआ है गार्डन में बहुत सारी ग्रास है।

अ दिन निकला हुआ है और दिन क और ऊपर बहोत अच्छा व्यू आ रहा है इसका।

आइटम सारा किचन का समान मिलता है और उसके साथ एक बिल्डिंग है जो वाइट कलर की बिल्डिंग है जो--

समथिंग कोल्डिंग और सब पानी की बोतल भी ये सप्लाई करता है जिससे लग रहा है कि यहाँ पर फ्रिज पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है आटे का कट्टा पड़ा हुआ है दालें आटे सब स्पाइसेस सब पड़ी हुई हैं।

ये एक शादी का स्टेज लग रहा है स्टेज अभी लग रहा है कि स्टेज अभी बन रहा है स्टेज पर आदमी खड़ा हुआ--

और स्टेज से नीचे खड़ नीचे उतरने के लिए भी स्टेयर्स पड़ी है स्टेयर्स का कलर बहुत अच्छा लग रहा है स्टेयर्स पिंक कलर की है।

ये एक बहोत अच्छी सी शॉप है इस पे सारा बोरिंग का काम ओ आ होता है बोरिंग मतलब जमीन में से पानी निकाल के समरबेल बनाते हैं और सारे काम होते हैं इसके अंदर।

यह एक बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है यह आई थिंक एक बहुत बड़ा सा गार्डन है या ग्राउंड है।

अपना अं अपना रूम लेके वहां पर स्टे करते हैं जहां पर जिनको कभी कपूरथला घूमना होता है वो वहां पर आकर घूमते हैं।

आई थिंक ये बहुत बड़ा सा एक बैंककट हॉल है जो बैंककट हॉल बहुत अच्छा सा डेकोरेशन हो रहा है।

यह एक बहुत बड़ी सी शॉप लग रही है यह गारमेंट्स की शॉप है यहां पर कस्टमर्स आकर अपने--

ट्री गायब हो गए हैं और ट्री के अंदर कोई लिव भी नहीं है और इसका लुक ऐसे लग रहा है जैसे प पतझड़ का मौसम आ गया है।

बहोत अच्छी टी लग रहे हैं और बहोत अच्छी बेंचेज भी पड़ी है।

बिल्डिंग बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर शेप के गिलास की--

और इसके आगे एक ड्राइवर खड़ा हुआ है इसके पीछे जो सामान लोड करा है आई थिंक वो खड़ा हुआ है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

एक टेबल का कलर येलो कलर का है एक ग्रीन कलर का है और बहुत अच्छा लुक आ रहा है जिसमें लोग डी_ जे पे आकर डांस करेंगे।

ये बहोत अच्छा सा एक व्यू आ रहा है यहां पर एक क्रिकेट जोन है यहा पर किड्स आकर खेलते है ये टम इस पे अपना जंपिंग करके किड्स अपना पूरा एंजॉय करते है बहोत अच्छा लग रहा है ये।